एक स्कूल ब रूम स्कूल के बाहर का फोटो लिया गया है जहाँ पर शटर है और बच्चे स्कूल बैग लेकर अंदर जा रहे हैं चार से पांच बच्चे हैं ।

और इसके अलावा सेंटिंग ठुक रही है वहां पर बहुत सारे मजदुर खड़े हुए है और जो सीमेंट का सामान है वो लिफ्ट से आ रहा है।

और एक साइकिल पे कुछ लोग जा रहे हैं कुछ पैदल जा रहे हैं कुछ औ ऑटो से जा रहे हैं किसी ने बैग टांगा हुआ है कोई वाइट कलर के कपड़े पहना है।

क्लास रूम के बाहर का फोटो लिया गया है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हैं तीन ग्रुप में और पांच छे लड़के बैठे हुए हैं।

और बहुत सारी सीढ़ियां दिख रही है सीढ़ियों का कलर ग्रे कलर का है और जो चर्च है वहां पर एक फूलो का कुछ टंगा हुआ है गुच्छा बीच में और व्हाइट कलर की सबने ड्रेस पहनी हुई है येल्लो कलर के दूप --

सभी बच्चे अपना-अपना काम कर रहे है कोई कटिंग कर रहा है कोई कुछ ड्राइंग कर रहा है कुछ बना --